यहां पे एक और जिसपर नेशनल --

तो लाइटों का यहां पे सीढ़ियां लगाई गई--

और यहां पे बहुत सारे घर बने हुए हैं।

और यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके हम ती--

यहां पे दीपक नाम लिखा हुआ है यहां पे बहुत सारी सजावट की गई है।

दुकान है पानी कि रखी हुई है

यहां पे चावल एट कट्टे रखे है मन तौले की मशीन रखी हुई है।